यह फोटो एक आदमी की हैं इसमें एक बंदा अपनी सेल्फी ले रहा है और यह फोटो शीशे के सामने ली गई है और इसके पीछे एक आदमी खड़ा है और यह फोटो एक छोटी सी--

गुड़िया रखी गयी है और लाइट जलायी गयी है और यह कमरे के अंदर फोटो ली गई--

यह फोटो एक बस स्टैंड की ली गयी है और यह फोटो दिन के समय ली ग --

यह फोटो एक होटल के सामने से ली गई है इसमें होटल के सामने का मैदान और अरे परे से उसको--

इसके साथ और भी आज हि बहोत सारी बी दुकानें बनाई गई है और यह फोटो रात के समय ली गई है इसमें अंधेरा ही अंधेरा दिखाई दे रहा है और फोटो सड़क से--

इसकी ली गई है और दिन के टाइम में यह फोटो ली गई है।

अ टर्न सुरंग के सामने कुछ व्हाइट कलर के पत्थर भी दिखाई दे रहे हैं और आसमान दिखाई दे रहा--

यह फोटो एक रेल पटरी की ली गई है इसमें एक रेल पटरी चल रही हैं और इसके ऊपर से बिजली कि तारें जा रही है और--

वर्चुअल रियलिटी गेमिंग का बोर्ड लगाया गया है इसमें कमरे बनाए गए हैं कमरों के--

और आसमान दिखाई दे रहा है और आसमान में कुछ सफ़ेद बादल और कुछ नीला आसमान दिखाई दे रहा है। और फोटो इन दुकानों की दिन के इसमें ली गई है और ये दुकानें अभी बंद की गई हैं।

यह फोटो एक मकान के बाहर बर्फ की ली गई है इसमें बाहर बहुत सारी बर्फ पड़ी हुई हैं और उसमें पै--

और बिल्डिंगे बनाई गई हैं और सामने पहाड़ी दिखाई दे रही है पहाड़ियों में बड़े बड़े पेड़ पौधे लगे हुए हैं और फोटो दिन के समय है।

यह एक खाने पीने के ब स्मान की बहुत बड़ी दुकान खोली गई है इसमें--